यहां पे एक बढ़िया बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है।

और यहां तिरंगे भी लगे हुए हैं मशीने भी लगी हैं।

यहां पे एक ये दुकान है।

और कुछ आदमी जिम भी कर रहे है।

और यहां शिशा भी लगा है।

लोहे के ग्रिल भी लगी हुई है।

यहां पे ये रोडवेज अड्डा है।

यहां पे ये मंदिर है बहुत ऊंचा और--

और काले कलर के और पीले कलर के गुब्बारे बहुत सारे टंगे हुए हैं और जिम का सामान भी रखा हुआ है।

और बहोत सारा समान यहां पे रखा हुआ है भी है।

यहां पे यह बड़ी दुकान है।

अउर यहां दीवार भी है। इसमें रेलिंग भी लगी हुई है।

और छत में पंखा भी लगा है लाइटें भी लगी हुई है।

और मंदिर भी है यहां ऊपर रथ भी उतरा हुआ है।

यहां पे है ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है।

और यहां बहोत से आदमी और लेडीज भी बैठी हुई हैं। --

इसमें कुछ समान भी रखा है यहां काउंटर भी रखा हुआ है।

और सूंड पे यह आदमी भी बैठा हुआ है।